यह फल दुकान है। यहां पर अनेक प्रकार की फल बिकी जाती है जो की फल में हम लोग कहते हैं केला संतरा सेब अंगूर नारियल तरह-तरह की फल देखी जाती है।

यह गार्डन है इस गार्डन में बहुत ही अनेक प्रकार के फूल लगी हुई है जो की बहुत सारी आदमी भी है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं फूल।

यह एक बिल्डिंग है अनेक प्रकार की कमरे है बहुत गाड़ी भी खड़ी है | बहुत भीड़ लगी हुई है बहुत ही भीड़ हमे दिखाई दे रही है बहुत ही सुंदर है यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है।

यह एक मैदान है। जिस मैदान बहुत बड़ा है। यह मैदान यहाँ पर सारे बच्चे फुटबॉल खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बगल में बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। वहाँ पे काफी बच्चे खेल रहे हैं।

यह सेलुन है यह सैलून बहुत बड़ी है यहां पर लेडिज जेंट्स सब की बाल काटे जाते हैं डिजाइन करके यह सेलून में बहुत सारे चेयर भी लगे हैं बहुत ही --

ये पहाड़ बहुत उंचाई है ऊंचा है। यह पहाड़ के बीचों-बीच झरना झरना बह रही है। उसके अगल-बगल बहुत ही पेड़-पौधे लगे हैं जो कि काफी बड़े है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। --